बस है जिस बस में अगल- बगल पर्दे लगे हुए है खिड़कियाँ बनी हुई है ऊपर भी लाईट रखी-- लगी हुई है और सामान रखने के लिए बना हुआ है और नीचे सीटे-- सीट रखी-- लगी हुई है।